छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

एक दुकान दिखाई गई हैं।

सफेद कलर की कुर्सियां पीले और--

माला पन्नी में तैयार रखी हुई हैं ।

इस चित्र में एक होटल का बोर्ड लगा नजर आ रहा हैं औ काँच के दरवाजे खिड़की दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी दिख रही है एक बड़ा सा पंखा भी नज़र आ रहा है और तार भी --

फोटो खिंचवाते हुए नजर--

गोल्डन कलर की लाइटे भी लगी हुई--

इस चित्र में एक फार्म हाउस का स्विमिंग पूल --

बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर--

इस चित्र में एक पानी के ऊपर--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

कुछ लोग आते जाते और गाड़ियां भी जाते आते नजर--

कुछ गेट और काँच की खिड़कियाँ नजर --

ये एक बड़े से मैदान का चित्र हैं जहाँ पर--

एक जगह पानी भी दिखाई दे रहा हैं ओर एक--

दिखाई दे रही --

इस चित्र में एक टेबल पर बहुत सारी --

यहाँ पर एक माइक भी लगा हुआ--

आ रहे है। वो एक गेट का पोस्टर नजर आ रहा है।